यह धागा का कारखाना है जहां दो व्यक्ति --

यह एक विद्यालय है जहां बहुत व्यक्ति है और दो कारीगर पेंटिग कर रहे हैं जो की बहुत सुन्दर कार्य कर रहे हैं और पेंटिंग में महात्मा गांधी का चित्र बना रहे हैं और साथ ही फल सब्जी भी बना रहे --

कपड़े खरीदने आए हुए हैं जो की शर्ट को पहनने के लिए जा रहे हैं ।